यह चित्र किसी म्यूजियम में बने पार्क का दिखाई दे रहा हैं जिसमें बहुत से नेताओ की फोटो को दिखाया गया हैं और आगे ही आगे महात्मा गांधी की फोटो को दिखाया गया हैं और पीछे कुछ बहोत बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

दिखाई दे रहे हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा फल फ्रूट दुकान में रखे हैं।

यह चित्र किसी मेडिकल के दुकान का है जोकि सामने मेडिकल में दो आदमी दिखाई दे रहे है और मेडिकल मे बहुत -सी दवाइयाँ-- बहुत सी घरेलू काम की चीजे रखी हुई है जोकि सामने फोटो मे दिखाई गई है।